और जोकि आ रही जा रही एंड खड़ी हुई भी है।

यहां पर एक भैसों का छोटा बच्चा बछड़ा भी खड़ा हुआ है।

रोड के दूसरी साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं खाई बनी हुई हैं।

व्यक्ति के पीछे के लिए एक बैनर लगा हुआ है।

फील्ड के अंदर की एक बाइक भी खड़ी है फील्ड के अंदर भी रोड है जिस पर हल्की-हल्की घास है।

यहां पर दो तीन कुर्सियां रखी हैं झोपड़ी के पास में ही एक घर है।

घर के चारों ओर लाइटिंग लगी हुई है।

मॉल के बाहर से ते तस्वीर ली गई है मॉल के अंदर अलग अलग चीजें हैं गेट पर एक वॉचमैन खड़ा है।